यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रहा है वोो बार्बर का शॉप दिखाई दे रहा हे और यह पर बहुत सरे फ्लेक्सी लगायी हुई हे यह एह्क आदमी मुँह पर मास्क लगा हुआ हे बाजु में तेरा हुहा हे |

यहा का लोग सारे दिखाई दे रहे है और बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है और छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे है।

यहां पर एक अलार्म आता दिखाई दे रहा है और बहुत सारे फायदे दिखाई दे रहे हैं दिखाइए दे रहे हैं --